इस दृश्य मे बिल्डिंग को बाहर से दिखाया गया है और रोड पर एक आदमी बाइक चलाता हुआ नजर आ रहा है उसके पीछे एक महिला बैठी हुई है।

इस दृश्य में एक लड़की डांस करते हुए नजर आ -रही है जिसने अपने हाथ पर लाल रंग से रंगे हुए- हैं

शंकर भगवान काली भगवान दुर्गा जी और बहुत सारे पते बंडल बंडल रखे हुए हैं।

और बहुत सारे मूर्ति-इ-इ तस्वीरे भगवान की रखी हुई है। और यह हाथ जोड़े दिखाई दे रहा हैं। बच्चा मां के तरफ चेहरा किया हुआ है।